इस तस्वीर में मुझे कुछ स्लाइड दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

यह मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कमरा दिखाई दे रहा है।